यहां पर दो तल्ला बिल्डिंग है।

पेड़ पौधे लगे हुए हैं नीचे बहोत सारी घास है बेंच के बगल में गिट्टी है।

यह एक स्कूल का चित्र है जहां पे सभी बच्चे डेस्क पे बैठे हुए--

सभी बच्चों ने ब्लू कलर का टी शर्ट और कुछ कुछ में सफेद सलवार शर्ट पहना हुआ है।

दीवाल पर एक ब्ल्यू कलर का चार्ट पेपर लगा हुआ है जिसमे हैप्पी दीपावली लिखा हुआ है सभी बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं।

यह एक रोड का चित्र है यह एक रांची जी_पी_ओ का चित्र है।

हरा कलर का टंकी बैठा हुआ है उसमें से सफेद कलर की पाइप गई हुई है।

सामने कुछ कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं एक कार और एक बाइक रखी है।

कुछ लोग अपने बाइक में कुछ लोग अपने स्कूटी में आना जाना कर रही है।

यह एक सेल्फ स्टडी रूम है जहां पर सामने तीन एलवरशिटर हैं जो खुले है।

हर डैक्स पर एक स्विच बोर्ड और कुर्सी लगी हुई है एक झंडा लगा हुआ है।

यह शादी का एक चित्र है जहां पर बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है।

सामने दीवाल पर पीला रंग से पोस्टर लगा हुआ है सा--

यह एक भी टू नाम का माल का चित्र है जहां पर बहुत सारे कपड़े हैंगर पर लगे हुए हैं।

सामने बहुत सारे व्यक्ति आना जाना कर रहे हैं एक ने हाथ में हेलमेट पहन के रखा है एक अंकल ने चश्मा पहना है।

अलग अलग खंड में अलग अलग कुर्सियां रखी हुई है।

एक अंकल अपनी एक बच्चे को ऊपर उठा के रखा है।

यह एक हॉल का चित्र है हाल पूरा खाली है सामने ब्लू कलर की कुर्सियां लगी हुई हैं।

ओवर और ईयर के बीच मे सी फाइव लिखा हुआ है।

सामने एक पेड़ है सामने झंडा फहराने के लिए एक स्थान सा बनाया हुआ है।

यह एक मैदान का चित्र है जहां पर मैदान के उस तरफ पे घर बन रहा है।

ऊपर आसमान नीला है नीचे जमी सीमेंट से जमीन बनाई गई हुई है।

धूम्रपान का एक पोस्टर सामने दीवार पर लगा हुआ है जिसमें धूम्रपान ना करने का लोगो बना हुआ है।

वह बोरी की एक चटाई में बैठकर योगा कर रही है।

सामने वह अंकल ने छाता लगा कर रखा है।

चारों तरफ मोमबत्ती जली हुई है बाहर अंधेरा है कांच का खिड़कियां हैं।